ये किसी जिम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी एक्सरसाइज की मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां पर शायद ये किसी रेस्टोरेंट का होल होगा यहां पर कुछ टेबिले लगी हुई है और कुछ सोफे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी मैदान की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर किनारे के ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे है।

ये किसी मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही पुराने जैसा बना हुआ मंदिर है।

यहां आस पास में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।